यह एक रूट की ली हुई तस्वीर है। यहाँ पर सामने इन्द्र द्वार लिखा हुआ है। ये एक मोहल्ला है।

ठीक गेट एक उपर झंडा लगा हुआ है इंडिया का।

यह एक दुकान है जिसके बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है उस दुकान के ऊपर बाल दाढ़ी करके लिखा हुआ है स्पा एंड सैलून।

यह एक बिल्डिंग हैं। जहाँ पर पी डब्ल्यू बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है। नीचे अलख पांडे की एक फोटो लगी हुई है।

एक आदमी ऑटो वाले को पैसे दे रहा है और पीछे से काफी सारी कार और बस वगैरह जा रहीं हैं। कुछ बाइक वाले भी हैं। जो की जा - आ रहें हैं।

यह एक वाटर पार्क है। जिसमें कुछ फैमिलीज़ आई हुई है। यहां पर काफी सारा पानी और बहोत --

यह एक पार्क है जिसमें बहुत सारे बच्चे और साथ में अ पेरेंट्स भी आए हुए हैं।

यहां एक बिल्डिंग है जिसमें आगे की तरफ येलो कलर हुआ हुआ है और बाकी पीछे का सब सीमेंट से प्लास्टर हुआ हुआ है। ऐसे ही--

यहां पर काफी सारे बच्चे बैठ कर पढ़ रहे है। ये रोड का किनारा लग रहा है। जिधर एक मैडम बैठी हुई हैं।

यहाँ एक दुकान पर एक कस्टमर खड़ा होकर कुछ सामान ले रहा है जिसके हाथ में दो पॉलिथीन भी है ।